यहां पर मुझे ए.टी.एम. लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और सामने के दो गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है और यहां पे मुझे --

यहाँ मुझे एक स्टेशनरी की शॉप दिखाई दे रही हैं जहाँ पे बहुत सारी बुक रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर मुझे आसाहित्य सदन पुस्तक विक्रत निटराज स्कूल की एक शॉप दिखाई दे रही है जो कि शॉप बहुत पुरानी सी --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

वाइट कलर की लगी दिखाई दे रही है और यह शाम का दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है और सामने वो मुझे एक इंसान खड़ा दिखाई दे रहा।

नाव और भी दिखाई दे रही है एक वहाँ पे नीचे बहुत बड़ी सी नाव दिखाई दे रही है ।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

प्रेयर करवाते हुए दिखाई दे रहे है और सामने की बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जो की स्कूल की बिल्डिंग है।

हरी कलर की कोई साड़ी पहनी दिखाई दे रही है निचे लाल और हरी कलर की मैटे बिछी हुई है बहुत सारे ।

यहाँ पर मुझे एक जो की फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे बोहोत सारे तोते दिखाई दे रहे है जो की कॉर्फूल तोते दिखाई दे रहे है वो एक अ --

एक टाइप नजर आ रही है यहाँ मंदिर बहुत बड़ा दिख रहा है सामने पे मंदिर के एक -

यहाँ पर फिर मुझे एक स्टेशनरी की दिखाई दे रही है जहाँ पर मुझे बहुत सारी बुक्स फोन पेन --